जैसा की मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ये बहुत सारी सड़क है वहाँ पे लम्बे पेड़ है।

जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत सारे मछलियाँ है अनगिनत मछलियाँ एक नीला रंग का टब है एक वायर लगी हुई है नीचे तरफ --

जैसे मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ लम्बी सी सड़क है हरे पेड़ घास है उजला आसमान है और लम्बी सड़क है यहाँ पे--

और नीले रंग पहने हुए एक आदमी खड़ा हुआ है लाल रंग का डिब्बा रखा हुआ है।

लल रखी हुए है और--

जैसे की हम यहाँ पे देख पा रहे है की एक बड़ा दो ईमारत वाला घर है जिसमे लाल रंग--